में एक व्यक्ति जो है मैंकेनिक है जोकि कुछ कल कलपुर्जो को साफ सुथरा कर रहा है और वो टोपी लगाए हुए हैं नीले रंग का हाफ टी-शर्ट और हाफ पैंट पहना हुआ है।

एक पूजा का समारोह है | छट पूजा एवम कार्तिक पूर्णिमा जिसमे काफी रौनक लगा हुआ काफी लोग आना जाना कर रहे --

पीला इत्यादि रंगों से इसको सजाया हुए देखने में बोहोत ही सुंदर लग रहा है लड़कियां अपने मन लगाकर किस रंगोली को सजा --

ये एक बस स्टॉप की छवि है। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं आना-जाना कर रहे हैं और कुछ लाइन लगा के खड़े हैं बस पर सवार होने के लिए। यहाँ पर काफी भीड़ लगा हुआ है।

यह शादी की फोटो है जिसमें दो व्यक्ति महिला और पुरुष जा रहे है वहा से निकल रहे है।